एक चाकू नहीं है इसमें एक फोक है स्पून है।

एक पनीर का पीस है जिसमे मसाला लपेटा गया है मला पनीर टिक्का बोल सकते --